यह देखनें से प्रतित हो रहा है की यह एक आर के क्रिमिक --

हो रहा है कि यह एक बहोत बड़ा ऑफिस के बाहर का रूम प्रतीत हो रहा है।

यह देखने से प्रतीत हो रहा है कि यह गवर्नमेंट स्कूल --

और कुछ सब्जी वाले भी आए हुए हैं।

लाइट्स और प्लोक्स रखें हुए हैं।

यहां पे पिंजरे भी बहुत साड़े रखे हुए हैं।

बहोत ही बड़े बड़े अक्षरों में--

ऐसा लगता है कि ये रात का समय है।

यहां कुछ छोटे छोटे फूल के पेड़ भी लगाए गए हैं।

को यहां पे लैब दिया जा रहा है।

यहां पे काफी अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगाई गई है यह किचेन लंबाई में अच्छी खासी है।

यहां पे एक ऊपर रेक भी बना हुआ है।

यह एक सैलॉन है यहां पे एक भैया एक व्यक्ति की --

यह एक मार्केट प्रतीत हो रहा है।

दुकान के बाहर टोकरियों में कुछ सब्जी या फल रख कर बेचा जा रहा हैं।

यह प्रतीत हो रहा है यहां पे एक छोटा सा बच्चा झाड़ू लगा रहा है